टेबल के उपर कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही है लाइट के बगल में कुछ पर्दे भी दिखाई दे रही हैं।

कंप्यूटर के बगल में कुछ इंसाने भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें एक सब्जी का दुकान दिखाई दे रही है।

तराजू के बगल में हमें एक साउंड पोर्ट भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें एक गाड़ी का शोरूम दिखाई दे रही है।

फोटो के ऊपर हमें बहुत सारी लाइट भी दिखाई दे रही है।

चारों ओर हमें पेड़ और पौधे देखने को मिल रहा है।

फोटो के ऊपर हमें कुछ झंडे भी दिखाई दे रही है।

ऑटो के बीच में हमें एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

नेट के बगल में बहोत सारे टॉवल भी है फोटो के पीछे हमें बहोत सारे कंबल भी दिखाई दे रही है।

और के सामने हमें बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

व्यक्ति के सामने हमें दो टेबल दिखाई दे रही है टेबल के बगल में बहुत सारी कुर्सियां भी है।

इस फोटो के सामने हमे एक आदमी दिख रही है।

फोटो के बाई और हमें एक कॉलेज दिखाई दे रही है।

के सामने हमे एक लॉज दिखाई दे रही है।

फोटो के दाए ओर हमें एक घर भी दिखाई दे रही है।

उसके बगल में कुछ कपड़े भी सूखे हुए दिखाई दे रही है।